के कलर जमुनी है।

सफेद कलर के बहुत से पन्नी बिछी हुई है।

सामने ईख हैं और बहुत से पेड़ भी खड़े हुए हैं।

बीच में इनके मिट्टी पड़ी हुई है और उधर लोग उधर जा रहे हैं दो लोग पाइप बीछी हुई है।

ये अस्पताल है यहां पे यहां पे बहुत सी कुर्सी पड़ी हैं।

यहां पे ट्रैक्टर कामयाब रहा है एक ट्रैक्टर खुला हुआ है।

महिंद्रा लाल कलर का है और महेंद्रे का भी टोप्पा खुला हुआ है।

ऊपर एक आदमी ट्रैक्टर में भी काम कर रहा है।

व्हाइट व्हाइट कलर का एक--

सामने बहुत बड़े पेट बहोत पेट दिख रहे है।

एक वाइट कलर की है एक ब्लू कलर की है ऊपर सर्विस लिखा रहा है।

मकान पे पीले कलर का पेंट हो रहा है।

हाईवे के उधर दो बाइक खड़ी हैं।

ये एक मंदिर है इसपे सफेद सफेद कलर का पेंट हो रहा है।

उसमें तीन लाइन हैं और इस पोस्टर पे दुकान वाले का नंबर भी लिख रहा है।

एक जैसे टेक कलर के विंडो और गेट भी रखा हुआ है बाहर एक और दो स्टूल रखे हुए हैं।

तीन गाटर लगे हुएं हैं यहां पे नीचे तीन डंडे खड़े हुए हैं बड़े-बड़े।

जहां पे सारी दुकान बंद है सिर्फ एक ही दुकान खुल रही है।

दूकान के गेट का कलर सिल्वर है।

उसपे ओल्ड स्कूल जिम लिखा है।

ये दुकान खुल रही है।

बहोत सारे डिब्बे रखे हुए हैं।

और ये बड़ी एक लकड़ी की अल अलमारी है।

वो एक आदमी फोटो खिंच रहा है पिंक कलर की टी शर्ट पहन के।

ये एक बाइक की दुकान है। यहां पर बाइक का बोहोत सारा समान टंगा हुआ है।

यहां पर बोहोत सारा पानी गिर रहा है और यहां पे बोहोत सारे पत्थर पड़े हुए हैं।

और बाहर एक ओ पड़ा है।

एक बहुत बड़ी बिल्डिंग भी खड़ी हुई है।

पीछे नंबर प्लेट लगी हुई है नंबर प्लेट पे लिख रहा है।

इसके पास में बहुत ही ब बड़ी बिल्डिंग खड़ी है।

यहां दीवार पर एक बा बाहर एक बोर्ड लगा है काले कलर का।

हाथ पैर खुले हुए हैं साथ ही दो ने जीन्स पेहन रखी है।

एक कुर्सी पड़ी है उसके ऊपर स्लैब है।

और पीले कलर का हेलमेट लगा रखा है।

और दोनों के हाथ में हथोड़ा है और ऊपर एक छेनी ले रहे हैं।

और ऊपर से व्हाइट कलर का लेंटर है उसे तोड़ रहे हैं अभी।

ब्लैक कलर की कुर्सी और मेज रखी हुई है।

यहां पे शीशे लगे हुए हैं और बाहर--

लाइट लाइट लगी हुई हुई है और लाइट सफेद कलर की लगी हुई हैं बाहर पीले कलर की लाइट लग हुई है।

यहां पर बहुत सारे बलब लगे हुए हैं।

ये सपेरे कलर के बने है।